ये घर बन रहा है। यहाँ ये देखने में बहुत सुंदर है। यहाँ तीन लोग हैं। दो ड्रम रखा गया है। एक मिस्त्री उसपे बैठा है। यहाँ तरकुल का पेड़ भी है। वहां एक बत्तख भी दिख रहा है। बहुत ही सुंदर है। बहुत ही अच्छा लग रहा है घर। बहुत बढ़िया लग रहा है।

मैरेज हाल है। बहोत ही अच्छा है। यहाँ एक आदमी खड़ा है। माला पहने है। कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हैं। देखने में बहोत सुंदर है। वहाँ कालीन भी बिछा है और बहोत ही सुंदर दिख रहा है।

ये आदर्श टेंडर्स एंड --